तस्वीर में एक हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा है।

यह छवि एक भीड़ भाड़ वाली जगह की है जाहां लोग एक लंबी कतार में लगे हुए हैं।

मे एक सुंदर पीले रंग का भवन दिखाई दे रहा--

भवन के सामने सीढ़ियां हैं जिन पर कुछ महिलाएं खड़ी हैं।

दुकान के पास चेक बड़ी बस खड़ी हुई है।

तस्वीर में रात के समय एक बड़े भवन का बाहरी दृश्य दिखाया गया है।

स्टोर को सफेद और लाल गुब्बारे से सजाया गया है।

इन क्रेनों का इस्तेमाल निर्माण कार्य में किया जाता है।

ईमारत के चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए है जो इसे प्राकृतिक और शान्त वातावरण दे रहे हैं।

कंक्रीट को पाइप पाइप का उपयोग करके स्तंभ में डाला जा रहा है।

इसका नाम जैसवाल इलेक्ट्रॉनिक है।

इसमें दैनिक आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है।

यह छवि एक समूह को दर्शाती है जो चिकित्सा प्रवेशों या स्थान कर्मियों का प्रतीक है।

मेदान में लाइट लगी हुई है जो रात में रोशनी के लिए उपयोग की जाती है।

बांध के पीछे एक जलाशय या झील जैसा दिखाई दे रहा है जो अभी सूखा हुआ है।

सीढ़ियां पर दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ऊपर की ओर जा रहे हैं।

मछलियां ताजा लग रही है और इनकी चमकदार त्वचा दिखाई दे रही है।

को धूप से बचने के लिए नीले रंग का एक बड़ा सा छाता लगाया हुआ है।

में खाने के लिए टेबल और कुर्सियां लगाई गई हैं।

यह तस्वीर एक आधुनिक ज्वेलरी शोरूम का दृश्य प्रस्तुत करता है।

शोरूम में खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन वाली शोकेस हैं ।

यह एक छोटी सी दुकान का दृश्य है।

दुकान की दीवारें नीली रंग से रंगी हुई हैं और दुकान में विभिन्न प्रकार के सामान रखे हुए हैं।

पर एक बड़ा क्रिस्टल चार लेयर लगा हुआ है जो हॉल को एक शानदार लुक देता है।

कई स्कूटर और मोटरसाइकिलें यहां पार्क की गई हैं।

छवि में एक कमरे या हाल जैसी जगह है।

यह बड़ी सी इमारत है जिसके चारों ओर गाड़ियां खड़ी है।

इमारत के परवेश द्वार के ऊपर एक लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

इमारत के सामने हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।